जैसा कि आप देख रहे हैं एक बड़ी नदी है और उसके ऊपर एक बोट है और बोट के ऊपर बहुत से आदमी है और उसके पीछे --

जैसा कि आप लोग देख रहे है सामने की ओर एक बहुत बड़ी स्टेशनरी की दुकान है और उसके बाजू में भी एक छोटी सी दुकान नजर आ रही है।

एक पुरानी बिल्डिंग नजर आ रही है उसकी सामने भी कुछ पेड़ लगे हुए है उसके बाजू में कुछ आदमी घूम रहे है।

हॉल नजर आ रहा है हॉल में एक सोफा रखा हुआ है और दीवार पर कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर झूमर --